जैसा की आप इसमे देख सकते ह एक लड़की नाच रही है और उसका नाचते हुए फोटो निकाला जा रहा हा और उसने लाल कलर की साड़ी पहनी है और उसके हाथों मैं भी लाल कलर की चुड़िया है।

तो इस फोटो मे हमे एक यूनियन बैंक का ए_टी_एम दिख रहा है जिसे देख कर ऐसा लग रहा है की ये ए_टी_एम अभी अभी--

जिसमे हमें नीचे के कई छोटे-छोटे घर और पहाड़ दिख रहे है तो ये फोटो वाकई म काफी सुंदर है।

तो ये फोटो एक जिम की है जिसमे कई सारे डम्बल्स रखे हुए--

और एक ऑक्सीजन मशीन है और दीवार पे लगे हुए पोस्ट --

यह फोटो ए पहाड़ की जिसपे दो खंबे दो बिजली के खंबे दो लगे हुए है और जिनमे झाड भी--